यह एक पुराना किला है जो कि काफी पुराना लग रहा है यहाँ पर कई वर्षों पहले यहाँ राजा राजाओं का --

और इसके सामने एक बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है यह एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन है और यहां पे लोग घूमने आते है।

इसमें एक सड़क जैसे दिखाया गया है इसके आस-पास काफी सारे दुकानें हैं छोटा-छोटा सा दुकाने है झोपड़पट्टी का।

और यहाँ से काफ़ी अच्छे कपड़े नए के तरह --

जो बार्बर है वो काफ़ी यंग है जो की अच्छा --

जो की भासक दे रहे है।